ग्रीन गोल्डन मिक्चर है पर्पल है सिल्वर का मिक्चर हैं इसमें पिंक एंड ग्रीन का मिक्चर है और ग्रीन एंड ब्लू का काफी कलर का दिवार पर रख हुआ है ये बॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं इसमें काफी --

डी यह स्टेशनरी है। उसमे बैग टंगे हैं।

चेयर है पेन वगेरा का बॉक्स है और भी चीज़े लाइट रखी इलेक्ट्रिकल की सामान बिजली के बोर्ड है टेप है पेन वगेरा पेंसिल इरेज़र रबड़ सब है ।

पूजा किया गया है। नीचे सीमेंट है। लोहे के ऊपर से कुछ प्लेट में कहाँ से लड्डू वै लगा है। मोमबत्ती जल रही है। अगरबत्ती जल रही है। दो लोग खड़े हैं दो वर्कर । एक वर्कर उधर काम कर रहा है। उधर लाइट जल रही है कुछ वर्कर उधर काम कर रहे हैं।

देख सकते हैं की यहाँ फैशन प्रो बाइक खड़ी है और बिल्डिंग में बल्लियाँ लगी हैं। कई सारी बल्लियाँ हैं लगभग पचास-साठ बल्लियाँ है।